अ ग्रे कलर की कार है जिसका इसपे प्लेट पे नंबर है थ्री नाइन डबल टू ।

टाइल लगा हुआ है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाइ दे रहा है जो कि वाइट एंड रेड कलर की है।

इस दुकान में बहोत सारे वैरायटी प्रोडक्ट्स हैं आपका।

और यहाँ पे सब खरे हुए हैं।

जहाँ पे बहोत सारे समान लगे हुए हैं।

रिक्शा भी दिखाई दे रहे है --